एक अंकल ग्रीन कलर का जैकेट व्हाइट कलर के अन्दर में ब्लैक कलर की जींस --

एक रूम को देख रही हूँ जिसमें एक व्हाइट कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पेहने एक अंकल --

अगल बगल से अंदर में जैसा नजर आ रहा है।

में प्रीमियम कुल्फी नीचे में लिखा है कुल्फी फिर फालूदा फिर सेब।

और इसका नाम है कुल्फी हाउस --

ये कोई पेट्रोल पंप है अंधेरे का टाइम है।

व्हाइट व्हाइट क्रीम क्रीम कलर का स्काई है डिफरेंट कलर का स्काई है।

इसमें लेफ्ट में नर्सरी लिखा हुआ है हिंदी में ना --

ऊपर में व्यायाम शाला लिखा है हिंदी में व आधा व य में आ की मात्रा या य में आ की मात्रा या।

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें एक लड़का हाथ में आइसक्रीम पकड़ा हुआ है।